बिजली के खंबे तार दिख रहे हैं ब्लैक कलर के दिख रहे हैं व्हाइट कलर दिख रहा है पीला कलर दिख रहा है।

नदी दिख रही है नदी में कलर दिख रहे है आसमान ग्रीन कलर जंगल वाइगैरा दिख रहे है गुफा दिख रही है पहाड़ दिख रहे है बादल में भी कलर दिख रहा है|

पिंक कलर पीला कलर ग्रीन कलर और नीला कलर पड़े पौधे दिख रहे हैं। एक हवन का वो दिख रहा है। घास वगैरह दिख रही है धुआं दिख रहा है मैदान दिख --

है गोल चक्कर में चाय का वो दिख रहा है बैनर एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है पत्तियां दिख रही है डिज़ाइन वाली।

गेट पे नीला कलर दिख रहा है पिंक कलर दिख रहा है। पेड़ भी दिख रहें हैं रोड पे पिंक कलर दिख रहा है। जाम --

गमले वगैरह दिख रहे हैं। तीन चार जेंट्स दिख रहे हैं। वाइट कलर का वो दिख रहा। उसपे बलून लगे हुए दिख रहे हैं। चेयर वगैरह दिख रही ब्लैक कलर की वाइट कलर की दुक --

बस स्टैंड दिख रही हैं गेराज दिख रहा है मैदान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं गाड़ियां दिख रही हैं ऑटो --